नीचे कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है और हम देख सकते है यहाँ पर लाल रंग की मैट भी दिखाई दे रही --

पंका बी दिखाई दे रहा।

यहाँ एक किताबों की दुकान दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर शोकेस के अंदर कई सारी किताबें जमा कर रखी हुई गई नजर आ रहे हैं। गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हम देख सकते हैं कि उनके पास गम के बोटल और कई सारी --

यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं और पुरुष यानी कि पंडित दिखाई दे रहे हैं।

हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टीन लगा हुआ है। उसके पास में पेड़ भी नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ हम देख सकते हैं की घास --

यहाँ पर हम देख सकते हैं की ये घर दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद रंग का है और एक सीडी भी रखी हुई नजर आ रही है उस घर के पास और हम देख सकते है कि यहाँ पे बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।